ऊपर आसमान है। नीचे एक बहोत बड़ा मंदिर दिख रहा है और मंदिर के साइड से रास्ता है।

एक सलून का दुकान है अंदर।

बहुत बड़ा खाली जमीन है आसपास में भी खाली जमीन है जमीन में कुछ बालू और ईंट रखा हुआ है सामने एक बहुत बड़ा बिल्डीं है।

दो कार जा रहे है और साइड में बहुत सारे--

जो कि तालाब के किनारे में है।

और उनके पास बहुत सारे मैट पड़ा हुआ है।

यहाँ एक क्लासरूम है यहाँ पर बहुत सारे डेक्स और बेंच र रखा हुआ है एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड लगा हुआ है।

एक स्टेडियम है स्टेडियम के चारे तरफ गैलरी है स्टेडियम के बीच में पीच है और पीच में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और गैलरी में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

बैलून लगा हुआ है और बहोत सारे पेड़ है।

एक आदमी कुछ कर रहा है और एक गाड़ी धो रहा है और यहाँ पर बाबा हरिदास मोटर्स बोल के एक पोस्टर लगा हुआ है साइड में एक बेड है और कुछ कुर्सियां है और कुछ--

कुछ दवाइयाँ दुकान और कुछ मोबाइल दुकान कुछ घर है।

कुछ मोटरसाइकिल रखा हुआ है।

यहाँ एक पार्क है पार्क में बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है और एक झूले में बहुत सारे लोग झूल रहे हैं और कुछ बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं।

एक टेवल है टेबल में बहुत सारी--

बहुत सारे टेवल और कुर्सियां रखा हुआ है टेवल के ऊपर कुछ ग्लास और बर्तन रखा हुआ है।

और एक टी_ वी लगा हुआ है और एक बड़ा फोटो लगा हुआ है।